पूल है जिसके आस पास बौंड़री लगी हुई है लाइट लगी हुई है पीछे काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

पूल के अंदर नीले रंग के पट्टी है जोकि ये डिफाईन करती है की पूल है जो मैरोथोन पूल है जो प्रेक्टिस के लिए बना है रेस की।

चोक है जिसमे दो लोगों की पैर दिख रहे है स्कूटी खड़ी है रेड कलर का पिलर है।

पीछे दो बईक भी है पिलर्स के सामने भी खड़ा हुआ है।

कंट्रक्शन साइड है जिसमे लकड़ियों से कुछ काम हो रहा--

चार लोग हैं जिनके हाथ मे ड्रिल मशीन और हथोड़े हैं ये कुछ काम कर--